ये एक तालाब है यहाँ पर चारों साइड सुन्दर-सुन्दर वृक्ष लगे हुए हैं और इस तालाब को चारों साइड दिवार से घेरा गया है।

बाल्टी और कुछ कूड़ेदान भी रखे हुए यहाँ पर और लाल रंग के ये सभी --

यह एक किराना दुकान है।

और इस किराने दुकान में अनेक प्रकार के झोले लटके हुए कुछ जगह गैस है आलू है पियाज है और कुछ--